ऊपर झरने के पास बहुत सारी छोटी छोटी हरी घास लगी हुई है।

स्टेज पे हरी कालीन बिछी हुई है जिसपे बहुत सारे साउंड रखें हुए है।

ऊपर त्रिपाल लगा हुआ हैं जिसमें गोल लाइटें लगी हुई है जो जल रही हैं।

एक मेज़ है मेज के ऊपर बहुत सारी ट्राफियां रखी हुई है बहुत सारे छल्ले रखें हुए हैं।

दो मिकी माउस है जिनके पास में लाल और काले रंग के गुब्बारे लगे हैं।

एक ट्रक खड़ी हुई है बहुत सारे गोल ईंटे लगी हुई है।

एक मकान है जिसमें काम हो रहा है। मकान के पास एक सीढ़ी रखी हुई है।

उसके हाथ में मोबाइल फोन है एक आदमी के सर पे तसला रखा हुआ है तसले में ईटें रखी हुई--

बहुत सारे बिजली के तार निकले हुए हैं एक कुर्सी पड़ी हुई है।

दुकान है दुकान के अंदर काउंटर है काउंटर पे एक कंप्यूटर एक प्रिंटर रखा हुआ है।

बहुत सारी हेडफ़ोन रखी हुई हैं। एक कीबोर्ड रखा हुआ है। एक कुर्सी रखी हुई है। पीछे दीवाल है।

दीवाल में कैलेंडर टगें हुए हैं एक बिजली का बोर्ड लगा हुआ है जिससे लिए हुई है।

तालाब के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है जिसमें कमल के पेड़ लगे हुए हैं।

गेट है जो कांच का बना हुआ है गेट पे फोर जी लिखा हुआ है।

एक पीले रंग का आटो है बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई।

यहां पे बहुत सारे सीमेंट के गमले रखे हुए हैं।

अंदर बहुत सारे हिरने है पास में एक मकान है मकान के ऊपर एक टिन सेट पड़ा हुआ है।

एक हवा वाला झुला लगा हुआ है एक गोल घूमने वाला झूला लगा हुआ--

हैंगर में बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े टंगे हुए हैं नीले रंग की टी शर्ट हैं।

पीछे दीवार है दीवार पीले और सफेद रंग में है।

एक मैदान है मैदान में बहुत सारी छोटी छोटी हरी घास लगी हुई है।

गेट हैं गेट के पास बहुत सारे बड़े हरे पेड़ लगे हुएं हैं एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

बोहोत सारे ठेला खड़े हुए हैं। एक बिजली का खम्भा लगा है जिससे तारें निकली हुई हैं।

ऊपर दो लाइटें लगी हुई है जो जल रही हैं दीवाल पे बहुत सारी सीनरी लगी हुई है।

एक डिब्बा रखा हुआ है आदमी खड़े हुए हैं एक लड़का खड़ा हुआ है।

पास में औरतें खड़ी हुई हैं जिन्होंने काली और लाल रंग की साड़ी पहन रखी हुई हैं।

पिच पे सफेद रंग की पट्टियां पड़ी हुई है।

जिसपे गिल्लियां रखी हुई है मैदान में छोटी छोटी हरी घास लगी हुई है।